फेस के लिए अलग-अलग तरीके की क्रीम है सेंट भी है।

बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं मंदिर के अंदर एक त्रिशूल जैसा भी दिखाई दे रहा है।

है पार्क एरिया जहां कुछ आदमी और औरते जैसी दिखाईं दे रही हैं।

पास में कुर्सियां रखी हुई है कुर्सियों का रंग सफेद है और टेबल का रंग ब्राउन है।

वो आसपास के एरिए में शायद बारिश हो रही है।

जीनका रंग नीला और सफेद है एक औरत छतरी लेकर वहां पर खड़ी हुई है।

जिसमें नीला और हरा और हल्के रंग का कंबीनेशन है।

और उसके आसपास भी कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं।

दो दीवारों पर बच्चों के हिसाब से हल्का रंग हुआ है और कॉम्बिनेशन बहोत ही जच रहा है।

जो दुकाने हैं जो गिफ्ट शॉप जैसी लग रही हैं।

जिसमे जीने जैसी अलमारी लगाकर अलग-अलग तरीके की भगवान की मूर्तियां रखी हुई --

और धूप से बचाने के लिए छतों पर भी लगाई जाती है।

ये एक सुनसान एरिया है जहां पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

जिन्होंने पैंट और शर्ट पहना हुआ है यहां धरती में कुछ टायर्स गड़े हुए हैं।

गेट हैं और खिड़कियां हैं खिड़कियों और गेटों के ऊपर भी दो खिड़कियां जैसे दिख रही हैं।

आसपास काफी हरियाली का माहौल है और खंबे भी लगे हुए हैं।